पीछे में मुझे बहुत बड़ा बड़ा पेड़ सब भी दिख रहे है।

बैठने के लिए मुझे सीट भी दिख रही है।

इस तस्वीर में मुझे बहुत सारा टमाटर सब दिख रही है।

और बहुत सारा मशीन सब भी दिख रही है।

पीछे में मुझे बड़ा बड़ा पहाड़ भी दिख रही है आसमान भी दिख रही है।

और सामने में मुझे कुछ जर्नी भी दिख रही हैं जो की रेड कलर के हैं।

और दूर में मुझे एक डस्टबिन भी दिख रही है जो कि ब्लू कलर के हैं।

इस तस्वीर मे एक बड़ा सा मुझे पार्लर शॉप दिख रहे हैं।

ऊपर में मुझे सी_सी_टी_वी कैमरे भी दिख रही है लाइट भी जल के दिख रही है।

इस तस्वीर में मुझे एक बड़ा सा बिल्डिंग दिख रही है।

और ऊपर में मुझे लाइट बल्ब जल के दिख रही है।

इस तस्वीर में मुझे एक मार्केट दिख रही है जहां पे मुझे बहुत सारे अलग अलग कलर के कपड़े सभी दिख रहे हैं।

मुझे वह पोस्टर भी लगा कर दिख रही है पीछे में मुझे बड़ा बड़ा पेड़ भी दिख रही है।